यख मा जी एक बैग भी छ यख मा जी रेलिंग भी छन दिखेण लगीं यखम बिजली का खम्बा छन बिजली का कई सारा तारान केबल का तारान यख मा जी हरयां भर्यां डाला भी छन।

यख मा जी एक बड़ी बारीकी इमारत करा यख मा जी देखण मा लगण लग्युं यू कोई चर्च चा।

दीवाल मा जी ट्यूबलाइटन लगीं लाइटन लगीं पिछाड़ी पर्दा कालु रंग कु लग्युं।

यख मा जी एक बडू भारी कू गेट करा यख मा जी कई सारी रंग बिरंगी लड़ी कर छन जलण लगीं यख मा जी एक पोस्टर कर भी छ साइड मा लग्यूं यख मा जी एक बांस खेडू छ साइड मा दिखेण लग्युं यख मा जी फूल भी छन दिखेण लग्यां यखम एक टाट पट्टी भी छन बिछीं।

यख मा जी एक देखण मा जी कोई कक्षाआलय छ लगण लग्युं यख पिछाड़ी खिड़की छ खिड़की पिछाड़ी मैदान छ दिखेणु हर्युं भर्युं डालू भी छ दिखेणु।

यख मा जी कई सारी बाइक छन लगीं यख मा जी सामणी एक इमारत कर यख मा जी एक बैंक का ये बैंक कू नौ एस.बी.आई छा यख मा जी ये बैंक कू नौ भारतीय स्टेट बैंक छा ।

इन फ्रॉक कर च पहनी घाघरू च पह्नयू पिछाड़ी मां जि कुछ कुर्सी छन दिखेणी पिछाड़ी फुण्ड ये लाइट भि छन दिखेणी।

यख मा जी एक ट्रक कर छयख मा जी कुछ लोग ये ट्रक पर सामान छन सारण लग्यां यख मा जी लाइट छिन लगीं।

पिछड़ी काला रंग कु पड़वार लग्युं यख साइड फुण्ड एक नीली लाइट दिखेण लगीं कमरा दिखेणु लडिन दिखेणी।

यख मां जि जु छ कंप्यूटर और मॉनिटर रखयूं यख मा जि एक टयूब लाइट दिखेण लगीं यख मां जि एक मशीन कर साइड म दिखेण लगीं ये पर लाइट च लाल रंग की जगण लगीं पिछाड़ी कई सारा तार छन।

यखमां जी यु बच्चा सुबेर-सुबेर हवा कन ओदन एक दिवार मां जी ट्यूब लाइटन लगीं यख मां जी पंखा उंडे-फुंडे लग्यां।

यख मां जि एक बडु भारी कु कमरा करा यख मां जी कई सारा लोग चन यखमां जि जु छ एक कुछ होटल करा करण लग्यूं यख मां जि कुछ जनानी छन कुछ जनाना छन।